एक टेरेस पर से हमें नीचे के सरक और--

दो लड़के शायद स्कूल ट्यूशन जाते हुए हमें दिख रहें हैं कुछ गाड़ियां भी नजर आ रहीं हैं।

एक व्यक्ति खा रहे हैं और एक व्यक्ति कागज में रसगुल्ले रख रहे--

यह काफी बड़ा शोरूम है। जहां पर हमें कुछ व्यक्ति--

हॉस्पिटल ही है यहां पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर का यहां सामने एक--

बाहर एक कल दिख रहा है। एक दो मोटरसाइकिस भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।